हैं जो कि लोहे की है मंदिर का रंग नारंगी है और किसी का गुलाबी है और प्लस लगा हुआ है।

जैसा की हम देख सकते हैं की यह एक नदी बह रही है जिसके --

वस्तु रखी गयी है जो अलग-अलग रंग की है।

जैसा कि हम दिख सकते है यह एक पहाड़ी छेत्र है जहाँ से एक नदी गुजर रही है पहाड़ो पर विभिन्न लगाके पेड़ पौधे दिखाई दे रहें हैं।